इन्हें झूले पर बैठाया गया है।

बगल में कॉब्स लिखा हुआ दुकान दिखाई दे रहा है।

पांच औरतें भी दिखाई दे रही हैं एक ने साल ओढ़ कर बैठा है।

इसके अगल बगल बड़े बड़े मंदिर भी बने हुए हैं।

कुर्सी अंदर लगाएं गए हैं जीस पर एक आदमी सफेद रंग की जैकेट पहने बैठा है।

जो रंग बिरंगे हैं ब्लू लाल येलो कलर के हैं एवं कुछ हरे हैं।

आने वाले रास्ते में दरवाजे में हर जगह शीशे लगाए गए हैं।

तस्वीर किसी इमारत के अंदर की है।

सामने की ओर एक दीवार दिया जलता हुआ नजर आ रहा है।

फेयर लवली क्रीम भी दिखाई दे रहे हैं।

इसमें बहोत सारे कार और चार--

कुछ लोग पैदल इकट्ठा होकर बातें करते हुए चलना पसंद कर रहे--

इसमें इसमें एक पीले रंग का पोस्टर है जिस पे फ्लोट लाइक ए बटरफ्लाई स्टिंग लाइक ए लिखा हुआ है।

ऊपर की ओर सीलिंग सफेद कलर का है एवं उसमें बहोत सारे लाइट लगाए गए हैं।

तथा इसके इर्द गिर्द नीले रंग की गद्देदार कुर्सियां लगी हुई नजर आ रही हैं।

पीछे की ओर तीन अलमारी रखे हैं जिनमें किताबों एवं फाइलों को सजाकर खड़े रूप से रखा गया है।

एक के हाथ में बैट है तथा दूसरा बैट लेकर खड़ा है।

तथा पांच लोग खड़े होकर उससे मिलने आए हुए हैं।

यह बाहर की ओर है।

उसके पीछे एक बिल्डिंग है जिसका गेट बहुत ही बड़ा है।

एवं कुछ बाटलो को सजा कर रखा गया है।

ये सारी लड़कियों ने फ्रॉक सूट एवं सूट पहन रखे हैं।

उसके दोनों ओर किनारों पर छोटे छोटे पौधे लगाए गए हैं।

सामने की ओर विवेकानंद जी का पोस्टर लगाया गया है।

ऊपर एल्बस्टर्स दिखाई दे रहे हैं।

आकाश में बिल्कुल बदल है।